और एक आदमी ने लाल कलर का टीशर्ट पहना हुआ है और ऊपर यहां पर ग्रिल लगा हुआ है।

और इधर एक पेड़ है पेड़ बहुत बड़ा है पेड़ में बहुत सारी हरी हरी पत्तियां हैं।

यह एक घर है घर बहुत बड़ा है घर का रंग पीला है।

और उधर कोको कोला का स्टीगर दिख रहा है।

यहां पर कुर्सी और टेबल लगे हुए हैं।

और एक स्टार भी टंगा हुआ है एक आदमी के हाथ में मोबाइल है यहां पर बहुत सारे किताबें हैं और कुर्सियां भी हैं।

और यहां पर तीन बेड लगा हुआ हैबेड मे सादा कलर का गद्दा है।

और यहां पर सब आदमियों के सर पर पगड़ी बान्हा गया है।

यह एक गुफा जैसा दिख रहा है इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पख्खल हैं।

बहोत सारे आदमी खड़े हैं एक आदमी ने पीले कलर का टी- शर्ट पहना हुआ है।

का नाम लखन बाबा आश्रम एवं विवाह भवन है।

यहां पर बहुत सारे सोफे और कुर्सियां हैं बगल में ब्लू कलर का लाइट लगाया गया है।

और ऊपर में पीले कलर का लाइट भी लगाया गया है।

यह एक इस्कूल है। इस्कूल बहुत बड़ा है। इस्कूल का रंग पीला है।

और नीचे एक कार भी रखा हुआ है कार बहुत बड़ा है कार का रंग काला है।

उधर तीन बेंच रखा हुआ है बेंच का रंग पीला है।

उधर दो ड्रम रखा हुआ है ड्रम का रंग भी पिला है।

और यहाँ पर तीन लड़के दौड़ रहे हैं।

पेड़ में बहुत सारी पत्तियां है पत्तियों का रंग हरा है।

पत्तियों का रंग हरा है और यहां बांस से घेरा गया है उधर एक घर है घर बहुत बड़ा है।

यह एक फल का दुकान है फल का दुकान बहुत बड़ा है।

यह एक बुक इशटोर है। बुक इशटोर बहुत बड़ा है। बुक इशटोर का रंग वाइट है।